और एक तो एक आदमी मास्क लगाया हुआ है।

इस इमेज को देखने से लग रहा है की यहाँ पर एक कॉन्सर्ट चल रहा है और सिंगर उसमें गा रहा है।

और आसपास प पर कोई मौजूद कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है।

सफाई बिलकुल नहीं दिख रही है इस इमेज में |